इस इमेज में एक आदमी कई सारे लोगों को व्यायाम करवा रहा है।

इस पर ये बड़ा सा मैदान है। इसमें कई सारे बच्चे दौड़ रहे हैं खेल रहे हैं। इसमें छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं।

अं हल्का पीले कलर का यह स्कूल बना हुआ है इसके पास छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं। बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हैं।

और नीचे ग्रीन कलर की पानी दिखाई दे रही है।

टी शर्ट पहनके तबला बजा रहा है। एक लड़की खड़ी है और एक आदमी बांसुरी बजा रहा है।